यह तस्वीर अंडर कंस्ट्रक्शन वर्क की चल रही है यहां पर एक लाल रंग की चप्पल भी पड़ी नजर आ र--

यहां पर बच्चो के सोने के लिए कुशन रखे हुए हैं साथ में बहुत सारे छोटे छोटे कपड़े भी नजर आ रहे हैं।

यहां पर ऊपर सफेद रंग हो रखा है।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

यह तस्वीर एक सैलून की नजर आ रही है जहां पर एक काले रंग के--

बाहर एक पोस्टर लगा हुआ है जिसके ऊपर एक औरत छपी हुई है।

और यहां पर जो लाल और काले रंग का ऑटो है उसको ई रिक्शा बोलते हैं नीचे हरा मेट है दो तीन आदमी हैं।

यहां पर लाल रंग का कैम्फर दिखाई दे रहा है।

अंदर एक स्टुल नजर आ रहा है।

स्टेशनरी शॉप की नजर आ रही है।

वे एक घर के सामने एक आदमी भी नजर आ रहा है।

घर के बाहर पेड़ियां भी लगी हुई है।

यह तस्वीर किसी स्पा सेंटर की नजर आ रही है जहां पर एक सफेद रंग का वॉश बेसिन नजर आ रहा है।